स्लाइड रूम है। जाल लगी हुई है। लकड़ियां पड़ी हुई हैं।

और कुछ ऊपर लटके हुए हैं अनार अमरूद लटके हुए हैं और लीची है।

कुछ पीछे खड़े हैं। वो एक पोल है। लाइट दिख रही है नीचे रोड है।

बस दिख रही है। आदमी बैठा हुआ दिख रहा है। खड़े हुए दिख रहे हैं। एक आंटी बैठी हुई दिख रही है।